तस्वीर में जैसे दिखाई दे रहा है यहां पे एक बिजली का खंबा है जोकि उसमें काफी सारा तार उलझा हुआ है।

और बगल पे एक अंकल है जो फोन को देखते हुए फोन यूज कर रहे हैं साइड में बाइक है।

कि एक अंकल बाइक सवार हेलमेट है लेकर फिर आगे की और ट्रेवल कर रहे हैं जो कि एक टोटो भी है।

जोकि बहुत ही मस्त नजारा है यहां का व्यूज जो है सो कि फोटो से देखने से साफ पता चल रहा है कि दिन का फोटो है।

जैसे कि हम देख पा रहे हैं एक छत है जो कि छत पे एक झंडा है जो हमारा देश भारत का झंडा है तिरंगा जो कि बहुत ही मस्त लग रहा है।

छठ पूजा त्यौहार का ये तस्वीर लिया गया है जो फोटो जो है सो सुबह-सुबह का ली गई है।